और कुछ व्यक्ति नीचे हैं यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इस दीवाल पे एक बैनर लगा हुआ है उसपे लिखा हुआ है झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाइटी ।

इस तस्वीर में एक बेडरूम दिखाई दे रहा है।

एक बच्चा और एक लेडिस दिखाई दे रही है।

सा इत्यादि यहां पर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

यह साम का समय है जिसमें सुनहरे बादल छाए हुए हैं।

इस व्यक्ति के पीछे एक गुफा दिखाई दे रहा है।

ये बहुत सारी फ्रेम रखा हुआ है।

यहां पे एक बोड़ा रखा हुआ है।

ये एक वेट मशीन भी रखा हुआ है।

पे नीचे टाइल्स लगी हुई है।

यह एक माला व्हाइट कलर का है।

यहां पे एक ऑरेंज कलर का भी माला है रेड और एक वाइट कलर का माला है।

तस्वीर में झरना दिखाई दे रहा है झरने से पानी आ रही है।

उस ग्राउंड पे बहोत सारी गाड़ियां खड़ी है।

यहां पे बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक एंबुलेंस दिखाई दे रहा है।

यहां पे बिजली का तार भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक हॉल दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है।